यहां जो बेंच लगी हुई है बेंच के ऊपर कुछ सामान पड़ा है अंदर की साइड सोफे पड़े है बेड पड़े है पीछे के एक दीवार है खिड़कियां लगी हुई है।

वहां पर बहोत सारे पक्षियों की फोटो दी गई है और नीचे इधर एक सामने घड़ी दीवार घड़ी टंगी हुई है पीछे टी_वी लगी --

एक आदमी खड़ा है चश्मा डाली हुई है एक प्लेट पड़ी है ग्लास पड़ा है लोटा पड़ा है।

स्टेनरी का सामान पेन पेंसिल शार्पनर --